मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार आप जानते हैं कि एक जरुरी कार्यक्रम के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि अमेरिका जाने से पहले ही मैं मन की बात रिकॉर्ड कर दूँ
सितम्बर में जिस दिन मन की बात है उसी तारीख को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है
वैसे तो हम लोग बहुत सारे डेज याद रखते हैं तरहतरह के डेज मनाते भी हैं और अगर अपने घर में नौजवान बेटेबेटी हों अगर उनको पूछोगे तो पूरे सालभर के कौन से डे कब आते हैं आपको पूरी सूची सुना देंगे लेकिन एक और डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए और ये डे ऐसा है जो भारत की परम्पराओं से बहुत सुसंगत है
सदियों से जिस परम्पराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है
ये है वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस
हमारे यहाँ कहा गया है
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः
अर्थात् नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिये देती हैं
हमारे लिये नदियाँ एक भौतिक वस्तु नहीं है हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है और तभी तो तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं
हमारे कितने ही पर्व हो त्यौहार हो उत्सव हो उमंग हो ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं
आप सब जानते ही हैं माघ का महीना आता है तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे एक महीने माँ गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं
अब तो ये परंपरा नहीं रही लेकिन पहले के जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नान करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्पमात्रा में बची हो लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी जो प्रातः में ही स्नान करते समय ही विशाल भारत की एक यात्रा करा देती थी मानसिक यात्रा देश के कोनेकोने से जुड़ने की प्रेरणा बन जाती थी
और वो क्या था भारत में स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति
नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु
पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोक बच्चों को याद करवाते थे और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी
विशाल भारत का एक मानचित्र मन में अंकित हो जाता था
नदियों के प्रति जुड़ाव बनता था
जिस नदी को माँ के रूप में हम जानते हैं देखते हैं जीते हैं उस नदी के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता था
एक संस्कार प्रक्रिया थी
साथियो जब हम हमारे देश में नदियों की महिमा पर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा और प्रश्न उठाने का हक भी है और इसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेवारी भी है
कोई भी सवाल पूछेगा कि भई आप नदी के इतने गीत गा रहे हो नदी को माँ कह रहे हो तो ये नदी प्रदूषित क्यों हो जाती है हमारे शास्त्रों में तो नदियों में जरा सा प्रदूषण करने को भी गलत बताया गया है
और हमारी परम्पराएं भी ऐसी रही हैं आप तो जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है खास करके गुजरात और राजस्थान वहाँ पानी की बहुत कमी है
कई बार अकाल पड़ता है
अब इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है
जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जलजीलनी एकादशी मनाते हैं
मतलब की आज के युग में हम जिसको कहते है कैच थे रैन वो वही बात है कि जल के एकएक बिंदु को अपने में समेटना जलजीलनी
उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है
मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी
हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं
नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जनजागृति जनआंदोलन उसकी बहुत बड़ी भूमिका है
साथियो जब नदी की बात हो रही है माँ गंगा की बात हो रही है तो एक और बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है
बात जब नमामि गंगे की हो रही है तो जरुर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा
आजकल एक विशेष Eऑक्शन ईनीलामी चल रही है
ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समयसमय पर लोगों ने दिए हैं
इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिये ही समर्पित किया जाता है
आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है
साथियो देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिये पानी की स्वच्छता के लिये सरकार और समाजसेवी संगठन निरंतर कुछनकुछ करते रहते हैं
आज से नहीं दशकों से ये चलता रहता है
कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं
और यही परंपरा यही प्रयास यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है
और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान पे आती हैं तो ऐसे काम करने वालों के प्रति एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जागता है और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊँ
आप देखिये तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ
यहाँ एक नदी बहती है नागानधी
अब ये नागानधी बरसों पहले सूख गई थी
इस वजह से वहाँ का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था
लेकिन वहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेंगी
फिर क्या था उन्होंने लोगों को जोड़ा जनभागीदारी से नहरें खोदी चेकडैम बनाए रीचार्ज कुएँ बनाएँ
आप को भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है
और जब नदी पानी से भर जाती है न तो मन को इतना सुकून मिलता है मैंने प्रत्यक्ष से इसका अनुभव किया है
आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गाँधी ने साबरमती आश्रम बनाया था पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गयी थी
साल में 68 महीने पानी नजर ही नहीं आता था लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है
इसी तरह बहुत सारे काम जैसे तमिलनाडु की हमारी ये बहनें कर रही हैं देश के अलग अलग कोने में चल रहे हैं
मैं तो जानता हूँ कई हमारे धार्मिक परम्परा से जुड़े हुए संत हैं गुरुजन हैं वे भी अपनी अध्यात्मिक यात्रा के साथसाथ पानी के लिए नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कई नदियों के किनारे पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं
तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है
साथियो वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सबकी मैं सराहना करता हूँ अभिनन्दन करता हूँ
लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को देशवाशियों को मैं आग्रह करूँगा कि भारत में कोनेकोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो कभी भी छोटी बात को छोटी चीज़ को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए
छोटेछोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़ेबड़े परिवर्तन आते हैं और अगर महात्मा गांधी जी के जीवन की तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटीछोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी अहमियत थी और छोटीछोटी बातों को ले करके बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था
हमारे आज के नौजवान को ये जरुर जानना चाहिए कि साफ़सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आन्दोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी
ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जनआन्दोलन बनाने का काम किया था
महात्मा गाँधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था
आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आन्दोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है
और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है और हम ये न भूलें कि स्वच्छता यह सिर्फ एक कार्यक्रम है
स्वच्छता ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक जिम्मेवारी है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्वच्छता का अभियान चलता है तब सम्पूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है
और इसलिए ये सालदो साल एक सरकारदूसरी सरकार ऐसा विषय नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्वच्छता के संबंध में सजगता से अविरत रूप से बिना थके बिना रुके बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है
और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है
साथियो लोग जानते हैं कि स्वच्छता के सम्बन्ध में बोलने का मैं कभी मौका छोड़ता ही नहीं हूँ और शायद इसीलिए हमारे मन की बात के एक श्रोता श्रीमान रमेश पटेल जी ने लिखा हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल्प लेना चाहिए
जिस तरह शौचालयों के निर्माण ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है उनका जीवन आसान बनाती है
अब आप जानते हैं जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया
इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसे रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है
ये बात सही है आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है
हमारे लिए ख़ुशी की बात है आज गाँव देहात में भी फिनटेक उपी से डिजिटल लेनदेन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है उसका प्रचलन बढ़ने लगा है
आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको गर्व होगा पिछले अगस्त महीने में एक महीने में उपी से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए यानि करीबकरीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यानि हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेनदेन के लिये उपी का इस्तेमाल किया गया है
आज एवरेज 6 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट उपी से हो रहा है
इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता पारदर्शिता आ रही है और हम जानते है अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है
साथियो जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था वैसे ही खादी को आज़ादी की पहचान बना दिया था
आज आज़ादी के 75वें साल में हम जब आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है
आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है
आप भी जानते हैं ऐसे कई अवसर आये हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में एक करोड़ रूपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है
मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्मजयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रेकॉर्ड बनाए
आप अपने शहर में जहाँ भी खादी बिकती हो हैंडलूम बिकता हो हेंडीक्राफ्ट बिकता हो और दिवाली का त्योहार सामने है त्योहारों के मौसम के लिए खादी हैंडलूम कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फोर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ने वाली हो
साथियो अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में देश में आज़ादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जनजन तक पहुँचाने का एक अभियान भी चल रहा है और इसके लिए नवोदित लेखकों को देश के और दुनिया के युवाओं को आह्वान किया गया था
इस अभियान के लिए अब तक 13 हज़ार से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वो भी 14 अलगअलग भाषाओँ में
और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि 20 से ज्यादा देशों में कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस अभियान से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है
एक और बहुत दिलचस्प जानकारी है करीब 5000 से ज्यादा नए नवोदित लेखक आज़ादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं
उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं जो अनामी हैं इतिहास के पन्नो में जिनके नाम नज़र नहीं आते हैं ऐसे अनसंग हीरोज पर थीम पर उनके जीवन पर उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है यानि देश के युवाओं ने ठान लिया है उन स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे जिनकी गत् 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है
सभी श्रोताओं से मेरा आग्रह है शिक्षा जगत से जुड़े सब से मेरा आग्रह है
आप भी युवाओं को प्रेरित करें
आप भी आगे आयें और मेरा पक्का विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इतिहास लिखने का काम करने वाले लोग इतिहास बनाने भी वाले हैं
मेरे प्यारे देशवासियो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं
वहाँ की ठण्ड ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है
दूरदूर तक बर्फ ही बर्फ और पेड़पौधों का तो नामोनिशान नहीं है
यहाँ का तापमान माइनस 60 डिग्री तक भी जाता है
कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है
इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15 हज़ार फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रेकॉर्ड बना दिया है
शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है और जब इस टीम के सदस्यों के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और हौसले से भर जायेंगे
इन जांबाज दिव्यांगों के नाम है महेश नेहरा उत्तराखंड के अक्षत रावत महाराष्ट्र के पुष्पक गवांडे हरियाणा के अजय कुमार लद्दाख के लोब्सांग चोस्पेल तमिलनाडु के मेजर द्वारकेश जम्मूकश्मीर के इरफ़ान अहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चोन्जिन एन्गमो
सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने का ये ऑपरेशन भारतीय सेना के विशेष बलों के वेटरन्स की वजह से सफल हुआ है
मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूँ
यह हमारे देशवासियों के कैन डीओ कल्चर कैन डीओ डिटरमिनेशन कैन डीओ एटीट्यूड के साथ हर चुनौती से निपटने की भावना को भी प्रकट करता है
साथियो आज देश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं
मुझे उत्तरप्रदेश में हो रहे ऐसे ही एक प्रयास ओने टीचर ओने कॉल के बारे में जानने का मौका मिला
बरेली में यह अनूठा प्रयास दिव्यांग बच्चों को नई राह दिखा रहा है
इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं डभौरा गंगापुर में एक स्कूल की प्रिंसिपल दीपमाला पांडेय जी
कोरोना काल में इस अभियान के कारण न केवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया बल्कि इससे करीब 350 से अधिक शिक्षक भी सेवाभाव से जुड़ चुके हैं
ये शिक्षक गाँवगाँव जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं तलाशते हैं और फिर उनका किसीनकिसी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराते हैं
दिव्यांग जनों के लिए दीपमाला जी और साथी शिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरीभूरी प्रशंसा करता हूँ
शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हर प्रयास हमारे देश के भविष्य को संवारने वाला है
मेरे प्यारे देशवासियो आज हम लोगों की ज़िन्दगी का हाल ये है कि एक दिन में सैकड़ों बार कोरोना शब्द हमारे कान पर गूंजता है सौ साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी COVID19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है
हेल्थकेयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है और जागरूकता भी
हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो वेलनेस यानि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है
ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी इस क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं
उन्होंने डेढ़ एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं
यही नहीं साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है
मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक और जानकारी साझा की है
सतीश जी ने झारखंड के एक एलो वेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है
रांची के पास ही देवरी गाँव की महिलाओं ने मंजू कच्छप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था
इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की
इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई
कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई
इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलो वेरा खरीद रही थीं
आज इस कार्य में करीब चालीस महिलाओं की टीम जुटी है
और कई एकड़ में एलो वेरा की खेती होती है
ओड़िसा के पतायत साहू जी हों या फिर देवरी में महिलाओं की ये टीम इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है वो एक अपने आप में एक मिसाल है
साथियो आने वाली 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मजयंती होती है
उनकी स्मृति में ये दिन हमें खेती में नए नए प्रयोग करने वालो की भी शिक्षा देता है
मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मेडीहब टीबीआई के नाम से एक इन्क्यूबेटर गुजरात के आनन्द में काम कर रहा है
मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स से जुड़ा ये इन्क्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आईडीईए को सपोर्ट कर चुका है
इस इन्क्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चेब्रोलू जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है
उनकी कंपनी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हीं पर इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशंस की भी जिम्मेदारी है
एक और एंटरप्रेन्योर सुभाश्री जी ने जिन्हें भी इसी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स इन्क्यूबेटर से मदद मिली है
सुभाश्री जी की कंपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के क्षेत्र में काम कर रही है
उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डेन भी बनाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स हैं
साथियो बच्चो में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक दिलचस्प पहल की है और इसका बीड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आयुष्मान जी ने
हो सकता है कि जब आप ये सोचें कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान हैं कौन दरअसल प्रोफेसर आयुष्मान एक कॉमिक बुक का नाम है
इसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटीछोटी कहानियां तैयार की गई हैं
साथ ही एलो वेरा तुलसी आंवला गिलॉय नीम अश्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सेहतमंद मेडिसिनल प्लांट की उपयोगिता बताई गई है
साथियो आज के हालात में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं
बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है
मैं साइंटिस्ट्स रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट्स की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढाए हीं हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो
साथियो पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं
पुलवामा के दो भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है
जम्मूकश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है
39 साल के बिलाल अहमद जी हाइली क्वालीफाइड हैं उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी हैं
अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं
बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है
इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है
हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब तीन हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है
आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं
उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं
पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मूकश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो 25 सितम्बर को देश की महान संतान पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मजयंती होती है
दीन दयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक हैं
उनका अर्थदर्शन समाज को सशक्त करने के लिए उनकी नीतियाँ उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है
तीन साल पहले 25 सितम्बर को उनकी जन्मजयंती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस शीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी
आज देश के दोसवादो करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल चुका है
गरीब के लिए इतनी बड़ी योजना दीन दयाल जी के अंत्योदय दर्शन को ही समर्पित है
आज के युवा अगर उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो ये उनके बहुत काम आ सकता है
एक बार लखनऊ में दीन दयाल जी ने कहा था कितनी अच्छीअच्छी चीजें अच्छेअच्छे गुण हैं ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं
हमें समाज का कर्ज चुकाना है इस तरह का विचार करना ही चाहिए
यानि दीन दयाल जी ने सीख दी कि हम समाज से देश से इतना कुछ लेते हैं जो कुछ भी है वो देश की वजह से ही तो है इसलिए देश के प्रति अपना ऋण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए
ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा सन्देश है
साथियो दीन दयाल जी के जीवन से हमें कभी हार न मानने की भी सीख मिलती है
विपरीत राजनीतिक और वैचारिक परिस्थितियों के बावजूद भारत के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल के विजन से वे कभी डिगे नहीं
आज बहुत सारे युवा बनेबनाए रास्तों से अलग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं
वे चीजों को अपनी तरह से करना चाहते हैं
दीन दयाल जी के जीवन से उन्हें काफी मदद मिल सकती है
इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में जरूर जानें
मेरे प्यारे देशवासियो हमने आज बहुत से विषयों पर चर्चा की
जैसा हम बात भी कर रहे थे आने वाला समय त्यौहारों का है
पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की असत्य पर विजय का पर्व भी मनाने वाला है
लेकिन इस उत्सव में हमें एक और लड़ाई के बारे में याद रखना है वो है देश की कोरोना से लड़ाई
टीम इंडिया इस लड़ाई में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है
वैक्सिनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है
इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है
हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट ना जाए
अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है उसे भी वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है
वैक्सीन लगने के बाद भी जरुरी प्रोटोकॉल का पालन करना है
मुझे उम्मीद है इस लड़ाई में एक बार फिर टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी
हम अगली बार कुछ और विषयों पर मन की बात करेंगे
आप सभी को हर देशवासी को त्यौहारों की बहुतबहुत शुभकामनाएँ